इनकी हालत देखकर ये भी लग रहा है कि इनको बहोत अच्छी तरीके से होली खिलाया गया है और रंगारंग किया गया है।

ये बहोत पुराना और बुढ़ा कछुआ इसके आकार से ही पता लग रहा है कि एक पुराना कछुआ है।

ये दृश्य एक कैफे का है जो शहर के बीचों बीच प्रतीत होता है कैफे का नाम है द सिटी कैफे जिसमें की--

और एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

हमे दो खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

ये दृश्य एक मैरिज पार्टी का है।

मिर्ची बड़ा कढ़ाई सब पड़े हुए हैं जिसके ऊपर बिस्किट्टों के पैकेट व ब्रेड के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पत्थरों में गिरा हुआ तालाब है जिसका पानी चलता हुआ नजर आ रहा है।

इसमें दो आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं वे एक बड़ी मूर्ती भी पड़ी है और ऊपर पत्थर है।

व एक आदमी जोकि अपनी पीठ पर हाथ रखे हुए कैप पहने हुए चेक की शर्ट पहने हुए खड़ा है।

ये दृश्य एक आइसक्रीम पार्लर का दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे प्लास्टिक की एक बड़ी सी आइसक्रीम बनी हुई है जिसकी फार्म व्हाइट --

इसमें नीले रंग के रैक भी बने हुएं हैं वह एक सीढ़ियां है जो की ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही --